सामने हमें एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसे वाइट कलर से पेंट किया गया है जिसकी खिड़कियाँ काँच की लगी हुई हैं।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

सामने हमे बंदर के जेसे दिखने वाले जानवर दिखाई दे रहे है जो कि बहोत सारे है ओर एक सुखी लकड़ी के डाल पर बेठे हुए है कुछ खडे हैं और पास--

और पास में ही एक आदमी भी खड़ा है।

सामने हमें एक टेबल दिखाई दे रहा है। जिसमें एक कपड़ा बिछा हुआ है। कपड़े के ऊपर प्लेट रखा हुआ है। प्लेट के ऊपर कटोरी में आइसक्रीम रखी हुई है। जिसमे टूटी फ्रूटी से डेकोरेशन किया गया है।